मुझे यहां पे कुछ शीशे की खिड़कियां भी दिखाई दे रही हैं।

इस तस्वीर में मुझे स्कूल का कॉरिडोर दिखाई दे रहा है जहां तक मुझे बहोत सारी खिड़कियां और दरवाजे नजर आ रहे हैं गमले में मुझे पौधे लगे हुए भी दिखाई दे रहे हैं।

ग्रीन कलर का नेट बिछाया हुआ हैं यहां पे मुझे चेयर्स और डी_जे भी दिखाई दे रहे है और एक गमले में पौधा नजर आ रहा हैं।

यहां पे कुछ ब्लैक कलर की चेयर्स और टेबल भी मुझे दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक बहोत बड़ी शॉप दिखाई दे रही है जहां पे बहोत सारी लाइट्स जली हुई है।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

जहां पे मुझे बहोत सारे टैकेज नजर आ रहे हैं।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

मुझे यहां पे आसपास बड़े-बड़े पेड़ वगैरा छोरियां भी नज़र आ रही हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक सब्जी की दुकान नजर आ रही है।

इस तस्वीर में मुझे एक जगह दिखाई दे रही है यहां पे बहुत सारी हरी भरी पत्तियां लगी हुई हैं।

यहां पे मुझे छत टीन की नजर आ रही है।

बिल्डिंग के बाहर एक गेट बना हुआ है जहां पे बहोत सारी बाइक्स और साइकिल खड़ी हुई है एक बाइक वाला अन्दर की तरफ ही जाता हुआ नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक स्कूल की बिल्डिंग नजर आ रही है।

आस पास मुझे हरी भरी झाड़ियां और ये पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं।